और ऊपर के साइड बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं जिसका कलर ब्लैक है।

और सामने में बोड़ा भी रखा गया है ।

और बस का ऊपर रखा गया है प्याज जो लाल कलर का है।

यह एक स्कूल का दृश्य है।

यहां पर खिड़की भी बनाए गए हैं जो ब्लू कलर का है ।

और यहां पर बहुत सारे अगल बगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे भी हैं।

यह एक स्कूल का दृश्य है यहां पर बहुत सारे बच्चे लोग लेटे हुए हैं और बहुत सारे बच्चे लोग खड़े हुए हैं।

और यहां एक बच्चा बैग लेकर पार हो रहा है जिसका बैग का कलर गुलाबी है।

और एक यहां आदमी खड़ा है जिसका शर्ट का कलर ब्लैक है।

इसका चेयर का कलर ब्लैक है और लोहे का मदद से बनाया गया है।

बहुत सारे लोहे का मदद से गेट भी बनाया गया है और पर्दा भी है।

और सामने में घर है जिसका कलर ब्लू है।

और दीवार का कलर ब्लैक है और नीचे में भी एक प्लास्टिक रखा गया है जिसका कलर ब्लैक है।

और सामने में दो चेयर भी रखा गया है जिसका कलर रेड और ब्लैक है।

और शीशे का भी मदद से बनाया गया रैक रखने वाला।

और नीचे के साइड बहुत सारे टाइल्स भी लगे हुए हैं।

और सामने में ग्राउंड में बहुत सारे घास फूस भी है।

नीचे के साइड बहुत सारे टाइल्स ओइल्स भी लगे हुए हैं।

जो रोड में सीमेंट का मदद से बनाया गया है।

और यहां पर बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं।

और यहां सामने में घर है जिसका कलर व्हाइट है।